रेस्टुरेंट है देख सकते है और बहुत बड़ा है और ये ये एक ऑफिस है देख सकते है ताकि यहाँ से सब कोई अपना अपना ले जाए और--

हेलो देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे ग्राउंड पे लगे हुए हैं पेड़ देख सकते हैं और यहाँ पे यहाँ पे आदमी बेबी रखा हैं वे टहल रहा हैं इधर-उधर देख सक्--

शेर वगेरा मौजूद है जो देख सकते है यहाँ काफी लोग जबरदस्त दिखाई दे रहा होंगा आप लोगो को और बदल पूरा छाया हुआ है हरा-भरा देख सकते है।